अम यहाँ पे हमें एक फॉर्म हाउस की फार्म दिख रहे है यहाँ पे।

कुछ लोग अंदर जाते हुऐ हमे नजर आ रहे है बिल्डिंग हमे दिखाई दे रही है पेड़-पौधे हमे दिखाई दिखाई दे रहे है यहां पे और बैनर्स लगे है और दीवारों पे कुछ लिखा है वो हमे --

ट्रीज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एक स्टेज जैसा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है चेयर्स हमें दिखाई दे रहा है कुछ लोग हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा हैं लइटिंग्स हमें यहाँ पर शो हो रही हैं और कुछ नकली फूल हमें यहाँ पे शो हो रहा है।

पेड़ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ ग्रसेस हमें दिखाई दे रही है सुखी --

और दीवाल हमें शो हो रही है जो थोड़ी ब्लैक और थोड़ी ग्रीन कलर की हमें यहाँ पे शो हो रही है अंदर वाइट कलर की बिल्डिंग हमें शो हो रही है ट्रीस हमें यहाँ पे शो हो रहा है।

और पीछे सफेद कलर का ओ बिल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है यहाँ पे हमें खिड़कियाँ गेट नजर आ रहा वहाँ पे पीछे हमें बॉट दिखाई दे रहा है।

हमें यहाँ पे एक जेनरल शॉप नज़र आ रही है जहाँ पे हनी है और अचार है बिस्किट्स शो हो रहें हैं चेयर शो हो रहीं हैं और पुट्ठे वगैरा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहें हैं कुछ पैकेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहें हैं।

जीने हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं फैन हमें हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और विंडोज हमें यहाँ पे नज़र आ रही है और यहाँ पे कुछ वाल्स पे कुछ चिप बैनर्स चिपके हैं।